तथा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा गया है।

बिल्डिंग में बहुत सारे सीसे बैठाए गए हैं।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर रूम के अंदर दो कुर्सी नजर आ रहे हैं।

एक रोड का दृश्य है जहां पर बहुत गाड़ियां नजर आ रही है तथा बहुत सारे आदमी भी नजर आ रहे है।

बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहा है।

बहुत बड़े बड़े दुकान नजर आ रहे हैं तथा बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

हाथ में बंदूक ली हुई है।

यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं।

गेट को लकड़ी की मदद से बनाया गया है।

तथा उसपे तकिए एवं गद्दे बिछाए गए हैं।

और यहां पे एक करकट का घर भी दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है।

जहां पर बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

तथा उसमें पेंट भी किए गए हैं और पेंट का रंग वा व्हाइट और भुरा है।

जगह जगह पे बहुत सारे खंभे भी नजर आ रहे हैं।